ये किसी क्रिश्चन का समारोह हो रहा है मतलब फंक्शन इसमें बहुत सारे लोग बैठ के फंक्शन एंजॉय कर रहे हैं।

बच्चों के खेलने के लिए झूले भी हैं मट्टी है ग्राउंड में कोई दिख नहीं रहा है धूप के वजह से सारे अपने घर में हैं कोई खेलने नहीं आया है।

वर्कर ने रेड कलर की जैकेट पहन रखी है रेड कलर की टोपी है कंस्ट्रक्शन साइड अधूरी है सीमेंट और छर भी दिख रहा है।

दिख रही है तीन रोड भी है एक स्कूटी पे पिंक कलर का हेलमेट टंगा है दो बाइक पे भी हेलमेट टंगा है वाइट कलर की सेंट्रो कार है।

यह किसी फर्नीचर शॉप की फोटो है जहां पे फर्नीचर बनाया जा रहा है एक ब्राउन कलर का सोफा है लकड़ी का।

यह किसी पार्क की फोटो है जिसमें एक स्टेचू है जिस स्टेचू में दो आदमी है उसके पीछे--

सामने एक वाइट कलर की बिल्डिंग है ऊपर आसमान है आसमान में बादल है बिल्डिंग पे पी_वी_आर लिखा है।

ये किसी बस स्टैंड की फोटो है जिसमें दो बस करें हैं एक सरकारी बस है एक प्राइवेट बस है बस लेने के लिए यात्री--

या किसी पार्किंग के बाहर की फोटो है जिसमें सिर्फ एक गाड़ी दिख रही है जो कि पोड़ से है ये फोटो कनाट प्लेस का है पीछे यहां से--

माल भी दिख रहा है बगल में पोर्से का शोरूम भी है पीछे ग्रीन कलर के पेर पौधे भी लगे हैं हरियाली है ग्रीनरी --